एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है इस में कई सारे लोग है जो की यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए है बड़े बड़े कई सारी स्लाइडें है जिनका रंग सफेद और नीला है।